इस पिक्चर के अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है कि जे एक अ गाड़ियां काफी सारी इसमें खड़ी जो कबाड़ख़ाने की है एक कबाड़ख़ाने की जो-जो कबाड़ होता है।

उम्म जो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है इ जे एक गुरूद्वारे की फोटो नजर आ रही है नहीं गुरुद्वारा नहीं है ये।

पिक्चर के अंदर हमें जो है एक सबसे बड़ी पेड़ है जो डेकोरेशन के लिए एक ग्राउंड में लगा रखी है दिखाई दी रही है।

इस पिक्चर में जो हमें दिखाई दे रहा है कि जे एक चिड़ियाघर की फ़ोटो है जिसमे सामने एक भालू नज़र आ रहा है।